दूसरी साइट दो लोग खड़े दिखाई दे रहे है जिसमे से एक ने व्हाइट और दूसरे ने येलो शर्ट पहनी है।

हमें एक कलेक्शन की फोटो दिखाई जा रही है जहाँ पर लड़कियाँ और लड़के के कपड़े दिखाए जा रहे है ऊपर की तरफ --

टॉप वगैरा और यहाँ सूट दिखाए जा रहे हैं जो ऐंगल पर लगे हैं नीचे की तरफ साड़ी दिखाई जा रही है और सूट दिखाए जा रहे हैं आसपास कुछ लोग दिखाई जा--

साइड में एक रेलिंग बनी दिखाई दे रही है उसके नीचे बहोत बड़ा तलाब दिखाई दे है जिस पे बहोत पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है साइड एक गिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

अलग अलग ऊपर बादल दिखाई दे रहा है ब्लू और येलो कलर का साइड में एक बहुत बड़ा बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है और एक घर दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का है।

सामने एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है।

उल्टे साइड से फोटो लिया गया है एक बाउंड्री दिखाई दे रही है साइड में चद्दर सेट दिखाई दे रहा है।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

एक बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है सामने की तरफ एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है फिसल पट्टी दिखाई दे रही है आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी है।

हमें एक खाली खंडहर दिखाई जा रहा है जिसका कलर भदरंगा दिखाई जा रहा है क्योंकि यह बहुत पुराना दिखाई जा रहा है सामने की तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखाए--